इनको पेड़ों की वजह से ऐसा फील होता है ये जंगल नहीं है इनको देखने लोग बहुत सारे लोग जाते है।

यहाँ ब्लू एंड वाइट कलर के बैलून लगाए हैं बहुत अच्छा गेंदे का फूल हैं गमले में बहुत सुंदर दिख रहा है।

बहुत मजा आता होगा तैरने में स्विमिंग पूल में --

फिर यहाँ पेट्रोल पंप वाला मशीन लगाएंगे जिससे पेट्रोल नाप नाप के लीटर के हिसाब से बेचा जाता है।

यहाँ चढ़ने के लिए दरवाजा दिया गया है ड्राइवर सीट अलग है।

मास्क लगा के रखे हैं घर में पढ़ाया जा रहा है घर बहुत सुंदर है।